जहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित है।

यह एक लड़का अपने कानो में हैडफ़ोन लगाकर विडिओ कालिंग कर रहा है लग रहा है या फोटो सेल्फी ले रहा है जो दिखने में हैडसम और उनके बाल भी कितने क्यूट से है।

और इसमें स्टूडेंट भी है जो अपने अध्यन के लिए अपने टीचर से परामर्श कर रहे है।

यह तो बस स्टैंड लग रहा है।